कंधे पर बैग टांगकर आ रहा है।

इस इमेज में चार छोटी-छोटी बच्चियां --

यह इमेज कंप्यूटर सेंटर के हॉल का है।

को मिलने का काम कर रहे हैं इसमे को टोटल तीन व्यक्ति हैं जिसमें से एक व्यक्ति ने नीले कलर का शर्ट --

जिसके दो स्तम्भं हैं और एक आड़ा स्तम्भ रखा हुआ है।

यह इमेज एक पेट्रोल पंप की है जिसेक तीन स्तम्भ दिख रहे है।

ए.टी.एम. के ऊपर मे स्टेट बैंक --

सफ़ेद कलर की पट्टी दिखाई दे रही है।

नीचे साइड मे के एच.डी.एफ.सी. बैंक है और ऊपर साइड मे केनरा बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे साइड मे पहाड़ी है पहाड़ी के ऊपर मे हरे कलर के झाड़ दिखाई दे रहे है साथ मे एक --